दो तीन बच्चों पढ़ाते हुए दिखा पीछे बैनर लगा हुआ है जिसके पीछे की झोपड़ी बनी हुई है एक लाल कुर्सी दिख रही है उसके पास बोर्ड है जो की वाइट कलर का है जो की बहुत अच्छा लग रहा है।

जैसा की हम देख सकते है सामने लेडीज के कपड़ो की दूकान दिख रही है इसमें दो मॉडल खड़े हुए दिख रहे है जो की डम्मी पीस होते है प्लास्टिक के इनको कपडे पहना हुआ है जो की बहुत ही अच्छा दिख रहा है सूट वगेरा है घांचा वगेरा है।

बहुत प्यारे लग रहे है निचे हमको गुलाब ही गुलाब दिख रहे है पीछे हमको लाइटिंग दिख रही है जो की बड़े बड़े लाइट के बल्ब लगे हुए है जो की बहुत ही प्यारे बहुत ही सुन्दर बहुत ही अच्छे--

कुछ पेड़ दिख रहे है पीछे एक बिल्डिंग दिख रही है जो कि ग्रे कलर की दिख रही है पेड़ हरे कलर की दिख रहे है जो कि बहुत प्यारे दिख रहे है ऊपर आसमान दिख रहा है जो--

जैसा की हम देख सकते है सामने हमको बहुत सुन्दर नज़ारा दिख रहा है बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा है जो की हमको दिख रहा है वो मार्केट दिख रहा है मार्केट के अंदर हमको अलग अलग दुकाने दिख रही है।

राइट साइड पेड़ लगे हुए है जो की हरे हरे दिख रहे है बहुत ही सुंदर नजर आ रहे है ऊपर खुला हुआ आसमान दिख रहा है जो की बहुत ही अच्छा लगा रहा है बहुत ही प्यारा लगा रहा है और हमको जमीं में पानी जाते हुए दिख रहा है जो--

ऊपर छत दिख रही है जिसमे वाइट लाइटे लगी हुई है जो की बहुत प्यारी लग रही है बहुत ही सुंदर लग रही है निचे उनका फर्श इनका जो की बहुत प्यारा लग रहा है।

इसमे हमको थिएटर भी दिख रहा जो की बहुत अच्छा है आय नॉक्स का थिएटर बना हुआ है मैक्स का शोरूम बना हुआ है नीचे हमको बाइके दिख रही है स्कूटे दिख रही है कार दिख रही है जो की बहुत ही अच्छी लग रही है।